है बस भी लगल है ट्रक भी लगल है सारे पेट्रोल पंप का जो मुड़लाई इसे अच्छा लग रहा है देखनें में यहाँ पर तेल ले रहे है इन लोग बहुत सारे गाड़ियाँ तेल ले रहें हैं और --

रहे है तीन लोग दो दो वो नाच रहे है और सब लोग बैठकर देख रहे है और कैमरा भी लगल है।

और क्यूट लग रहा है और बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा देखने में स लग रहा है।

अन्दर मंदिल है दो जगह मंदिल है और बीच में घर भी है और बीच में बहुत सुन्दर लग रहा है दिखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है मंदिर--